सामने एक भगवान का फोटो रखा हुआ है।

पंखा भी लगा हुआ है यहां बहुत सारा टेबल भी है लगा--

बिल्डिंग के कलर व्हाइट है।

अलमारी में सामाने रखें हुई है।

उसके बाहर पानी नीचे झरर झरर गिर रहा है।

इस दुकान में विलायती दूध है होरलीश है साबुन भी है और तेल भी है।

और घड़ी भी सामने दीवार पर दिखाई दे रहा--

इसमें बहोत सारे आदमी लोग भी चेयर पे बैठे हुए हैं।

और नीचे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है--

यह कोई बहोत बड़ा शॉप है जीस शॉप में बहोत कार्टून दिखाई दे रही है।

यहां पे आदमी भी दिखाई दे रहा है और बहोत सारा लाइटें भी लगी हुई।

यह एक बहोत बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ एक मूर्तियां दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान है इस दुकान में बहोत अलमारियां है।

यहां गेट प माला सजाया गया है।

और इस दुकान में बहोत सारा सामान है।

यह एक दुकान है जिस दुकान का कलर वाइट और रेड --

नीचे फर्श पर रेड कलर का टाइल्स भी लगा हुआ है।

यह एक बाइक का शोरूम है इस शोरूम बहुत अच्छा सजाया गया--

इस नदी में एक पत्थर भी हैं पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ हैं।

इसमे आदमी भी है और छोटा छोटा फूल पौधा भी बहोत लगाया गया है।

और सामने एक बॉल दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में कार्टून भी रखा हुआ है उसके ऊपर हेल्मेट रखा हुआ है।